तथा कुछ राशन के किराने की दुकान है तथा यहाँ पर काफी सारी गाड़ियाँ भी खड़े हुए दिख रहे है तथा कुछ लोग भी खड़े हुए दिख रहे है।

नेवले दिखाई दे रहे है यह नेवले के चार पैर है लेकिन ये सभी अपने दो पेरो के उपर खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक छह सात शटर लगी हुई दूकान है इन सभी का शटर बंद है तथा यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है।

दे रंग के टी शर्ट पहने हुई है तथा नीले रंग की निक्कर पहनी हुई है तथा यहाँ पर --

काले रंग का इसने चश्मा लगा रखा है यह व्यक्ति नंगे पाँव खड़ा हुआ है तथा एक पाँव आगे की और यह कर रखा है।

यहाँ पर थोडा थोडा अंधेरा सडक पर दिखाई दे रहा है यह पेड़ की छाँव की वजह से आ रहा है।